जिलेबी झींगी दुध खोवा दुध पेड़ा मिक्चर --

सब चीज आपको तीखा मीठा देखने को है इसमें तीन रेक्स लगे हुए हैं।

पूर्णिया सुजुकी दो बोर्ड लगे हुए हैं सुजुकी वाला बोर्ड नीले रंग का है ।

ठीक उसी के ऊपर छह खिड़कियाँ हैं।

और तिस्सरी की जो योगा कर रही है उसका मल्टी कलर है।

ईटों के ऊपर भी एक पैर इधर एक पैर उधर करके खड़ा है।